एकरेसर तीनो प्रकार काम होत थे।

एहा मैरिज हॉल के हे जहाँ दूल्हा दुल्हिन मन बैठी वहाँ ले टेंट वाला मन बढ़िया फूल खम्बा लाइट --

अपन अपन लोग लाइका घर वाला जममो झन एक साथ किंजरे बर निकलथे यहाँ झूला बड़े मन के झूला बच्चे मन के भी--

एहा मक्षी दुकान ए जहां हर प्रकार के मक्षी छोटे मक्षी बड़े मक्षी--

एह रायगढ़ की केलो नदी ए जहाँ बरसात के समय मे यह दृश्य जहां पानी पुलिया के ऊपर रोड मे भी--